पेड़ लगे हुए हैं और एक आदमी वहाँ से गुजर रहा है जो हाथ में कुछ कागज लिए हुए है।